और यहां पर कुछ गाड़ियां खड़ी हैं आसपास कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और यहां पर कुछ परदे भी रखे गएं हैं।

और यहां पर कुछ बेंच लगाए गए हैं।

लोग गाड़ी को धो रहे हैं।

यहां पर कुछ पोस्टर भी लगाए गए--

यहां पर सामने एक दुकान है और इस दुकान में बाथरूम का कुछ समान रखा हुआ है।

और कुछ बोतले रखी गई है।

यहां पर सामने एक गाड़ी खड़ी है।

यहां पर सामने एक बस है।